इसमें नीचे बढ़िया पत्थर भी बिछा हुआ है।

पीछे बहुत सारे लड़के भी खड़े हुए हैं।

और नीचे एक गत्ता भी पड़ा हुआ है।

इस फोटो में तीन अलमारी दिख रही है।

और तीन डब्बे भी पड़े हुए है।

और उसपर एच_पी पेट्रोल डीजल लिखा हुआ है।

इसमें कुछ गमले भी रखें हुए हैं।

इस पूल के चारों ओर लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

में एक टेबल पर काले रंग का बैग भी रखा हुआ है।

और इसमें एक वाइट रंग की टेबल भी बीछी हुई है।

इसमें कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

किसी रूम को एक अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ है।

इसमें वाइट रंग की एक टेबल भी धरी हुई है।

और ऊपर एक टैंक भी दिख रहा है।

यह फोटो किसी अस्पताल का दिख रहा है।

उनके ऊपर सफेद चद्दर भी बिछी हुई है।

यह फोटो किसी कंपनी का दिख रहा है।

और इसमे एक नीले रंग का थेल्ला भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें कुछ कॉफी भी नजर आ रही हैं।

और इसपे हरे कलर के मैट भी बिछे हुए हैं।

और थाली में कुछ पिला पिला रखा हुआ है।

जिसमें एक पीले रंग की है और एक हरे रंग की है और एक काले रंग की।

और बहुत अच्छे डेकोरेशन भी की हुई है।

इस फोटो में लकड़ी के बक्से बने हुए हैं।

वहां तीन चार कार भी दिखाई दे रही है।

और एक साइकिल का टायर भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ खुले हुए डब्बे भी रखे हुए हैं।

जो स्टील की थाली में रखी हुई हैं।

और बाहर थोड़ी सी डेकोरेशन भी की हुई है।

और इसमें एक मेज भी दिख रही है मेज पर कुछ समान भी धरा हुआ है।

और इसमें कुछ ट्रैक्टर और ट्रक भी दिख रहे हैं।

और हल्के से मकान भी दिखाई दे रहे हैं।